जिसने काले कलर का कपड़ा पहन रखा है।

गेट के अंदर जा कर मंदिर है।

अ ट्रिपल फ्लोर का बिल्डिंग है।

ये गुलाब के फूल कुछ बहुत खिले हुए हैं और कुछ छोटे हैं भी जो कुछ समय में जाकर खिल जाएंगे।

काउंटर नंबर चार पर एक सफेद कलर की फोर व्हीलर खड़ी है जबकि काउंटर नंबर तीन के बगल से एक बस पास हो रही है।

ये बहोत सुंदर तरीके से सजाया गया ह--

जिसमें कई प्रकार के कपड़े उपलब्ध हैं।

यहां पर एक प्रोजेक्टर लगाया गया है।

जिसमें जिसको की फूलों और कपड़ों से सजाया गया है।

पेट्रोल पंप को ऑरेंज और ब्लू कलर से सजाया--

हैं पानी की एक ग्रीन कलर का सबसे पहला बेंच लगा हुआ है।